बच्चे यहां पे हैं चार तीन आदमी दिख रहे हैं यहां--

यह बाइक ए_टी_एम भी दिख रहा है बहुत सारा गाड़ी दिख रहा है बा --

इ दूकान भी हे एक आद दो आदमिन भी हे.

अंदर कुछ पीला टाइप का दिख रहा हे.

बाल्टी उलटी बोहोत सारा हे एक आदमी कुछ खड़ा हे आदमिन.

दो बेड है एक कुछ रखने वाला होगा सामान.

यहां पे बहोत सारे बर्तन दिख रहे हैं खाने पीने वाला समान बना रहे हैं.

गाड़ी का आगे वाला बोडी दिख रहा हैं एक बाइक हे.

यहाँ फेवीकिक भी हे वहां सेटर भी है दो सेटर भी यहाँ रखने वाला सामान भी है।

बहुत सारे मतलब एक पत्थल है.

अंदर गुफा से निकला है आदमीन पीला रंग पे जूता पहना है.

उधर मंदिर भी दिख रहा है बिल्डिंग भी एक दिख रहा है.

और बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग के नीचे कुछ बोर्ड लगाया गया है।

यहाँ कुछ ऊपर बोर्ड लगा हुआ दिख रहा हे सीता के पास यहाँ जाडी बोहोत सारा दिख रहा हे.